कुछ गर्ल्स और बॉयज खड़े हुए है।

एक रेड कलर की एक्टिवा खड़ी हुई दिख रही है।

बल्ब लगे हुए हैं एक लड़का ब्लैक कलर के ड्रेस में खड़ा हुआ है एक लड़का जो है रेड कलर की टी-शर्ट पहने हुए खड़ा है।

इस इमेज में हमें रोड दिख रहा है रोड के साइड में--

गार्डन दिख रहा है गार्डन बहोत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं येलो।

और जो है साइड में येलो कलर की बिल्डिंगें दिख रही है।

पर्पल कलर का पर्दा डाला हुआ है एक पेन दिख रहा है एक अंकल खड़े हुए हैं चेयर्स के पास।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक लड़का पेंट कर रहा है।

और उसका जो गेट है वो ब्राउन कलर का है।

कपड़े रखे हुए हैं कुछ जो है बच्चों के कपड़े भी है।

और जो है शेर के पास में जो है बाउंड्री खींची हुई है तारों की ब्लैक कलर के तार के--

इमेज में हमें आसमान दिख रहा है सूरज दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक जो है लाइब्रेरी दिख रही है लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी हुई है।

इस इमेज में हमें एक गुरुद्वारा दिख रहा है कुछ लोग प्रेयर कर रहे है।

बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं रोड दिख रहा है।

साइड में एक बैंक है जो बंधन बैंक --